ये_ये_ये_ये एक घर की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमे हमे दो लड़के खेलते हुये दिखाई दे रहे है छत के फ्लोर पर पीले व नीले कलर के बलून लगे दिखाई दे रहे है ।

इस इमेज में हमें एक डॉक्टर और एक मरीज दिखाई दे रहा है मरीज टेबल पर लेटा हुआ हैं।

तस्वीर में हरे रंग का पेड़ नजर आ रहे है नीचे हरे रंग की घाँस दिख रही है कुछ व्यक्ति दिख रहे हैऊपर नीले रंग का आसमान नजर आ रहा है एक लोहे का डंडा नजर आ रहा है।

यह एक दुकान नज़र आ रही है तस्वीर मे साइड मे इसमे बिस्किट रखे हुए है।

नीचे पानी भी दिख रहा है पीछे पूरी चट्टाने है पहाड़ बने हुए हैं ।

यह एक मंदिर की तस्वीर हैं इसमें सामने एक मिनार दिख रही हैं पीछे इसमें बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ऊपर इसमें आसमान दिख रहा हैं।

टेबल और कुर्सी रखी हुई है ऊपर इसमें लाइट लगी हुई हैं।